यह चित्र स्कूल के छात्र-छात्राओ का चित्र है।

यह एक बड़े से वृक्ष का चित्र है। वृक्ष में एक बच्चा खड़ा दिखाई दे रहा है।

साइड में एक हरी-भरी बड़ी सी बेल दिखाई दे रही है।